उसके पर्दे गुलाबी रंग के हैं।

उसके बगल तीन चार पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

वे हाथ में कुछ ले रखा है।

और सामने की ओर बहोत बड़ी नदी दिखाई दे रही है।

और दो जनों ने येलो रंग का कपड़ा पहना हुआ है।

पे कुछ पी सिंबल लगा हुआ है और बिल्डिंग की दिवा सीसे बिल्डिंग की खिडकियाँ सीसे रंग की है।

और अ अगल-बगल कुर्सी नज़र आयी है कुछ सामान है सफ़ेद रंग के --

कई मंजिलों की है और बिल्डिंगों के मंजिलों पर सामान रखे नज़र आ रहे।

चोलापुर पैथोलॉजी सेंटर और अगल-बगल बहोत सी दुकानें नजर आ रही हैं।